यहाँ एक आदमी अ-अ ठेहरा हुआ है और यहाँ पे एक बिल्डिंग अभी पुरी तरीके से बना नहीं है वो उसके ऊपर ठहरा है और वो सफेद रंग का टी-शर्ट पहना है और----

मिक्स कर रहे है और यहाँ ये घर नहीं बना है और यहाँ पे शार्प ब्लेड है।

तीन लोग योगा कर रहे है और उन्होंने योगा मेट भी डाली हुई है एक ने पर्पल एक गुलाबी और एक नीला रंग के मेट्स है वहां पर बोहत सारे स्वीट्चस है।

यहाँ पे जिम का दृश्य है यहाँ एक आदमी ऐसे अन्लाइक ट्रेनिंग कर रहा है और उस मसल्स के लिए ये बहुत स्ट्रॉंग माना जाता है।

बहुत अच्छे अच्छे डमरू ये सब दिखाई दे रहा है और आदमी देख के उसे बहुत पसंद से ले रहे हैं यहां की चीज़ें बहुत प्यारी हैं।